यहाँ पे सामने सजावट है और इधर सब आइसक्रीम चाट चल रही है और सामने कुछ लोग बैठ --

यहाँ पर एक मिठाई की दुकान हैं और यहाँ पर बहोत सारी मिठाई रखी हैं और किराम रखे हुए हैं और यहाँ पर एक तराजू रखा हुआ है।

फिर उसके इधर एक सफ़ेद बिल्डिंग है एक गुलाबी बिल्डिंग हैं। नीचे घास लगी हुई है थोड़ी थोड़ी सी।

पेड़ है फिर उसके बगल में कच्चा घर है फिर उसके पीछे एक पेड़ है फिर उधर कपड़े पड़े हुवे हैं फिर उसकी बगल में एक टंकी काली कलर की --

यहाँ पर बहोत सारे खजूर के पेड़ लगे हुए हैं। यहाँ पर हरी कलर की घास हैं। सामने सफ़ेद कलर की --

और उसके नीचे पेड़ लगे हुए हैं और उसके बगल मैं बहोत सारी गाड़ी खड़ी हुई हैं। उसके नीचे ऑरेंज कलर की पुताई हुई --

और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर एक कड़ाही रखी है और यहाँ पर एक भगौना रखा है और एक बाल्टी रखी है अंदर चीज़ बिक रही है।

चार टंकी लगी हुई हैं और उसके ऊपर जीना बना हुआ है नीचे सफ़ेद कलर से पुता हुआ है।

यहाँ पर चार-पांच कार खड़ी हुई हैं और यहाँ पर बहोत सारी बाइक खड़ी हुई हैं। उसके बगल में --

यहाँ पर बहोत सारी लाइटे लगी हुई हैं। काली कलर की जाली लगी हुई है। सामने एक --

और अगल-बगल में बहोत सारे पेड़ हैं कुछ आदमी इस साइड में खड़े हैं कुछ इस साइड --

और एक कथई कलर की खिड़की लगी हुई है सामने सफ़ेद कलर से पुता हुआ है और नीचे के जमीन में प्लास्टर हुआ है।